यहां जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस दरवाजे पे जा रही हैं और बाहर उस स्टोर के आसपास जो हैं दरखत भी फूल लगे हुए हैं।

कमु और बसे वगेरा जा रही है एक बाइक पे एक औरत अपने हस्बैंड के साथ बैठे जा रही है रोड चल रहा है ।

ज्वेलरी की दुकान है जो कि उसकी बाहर की लोकेशन है जवेस ।

केयर ज्वेल्स की दुकान है और उनके साथ जो है कुछ और भी चीजों की दुकानें हैं ज्वेलरी की दुकान के बाद जो लड़कियों की पिक्चर लगी --

काम कर रहे है और सीमेंट वगैरा उसके ऊपर डाल रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं इंजीनियर ।

मूर्ति है मूर्ति के पास एक लड़का खड़ा होके जो है वह सेल्फी बना रहा है भागवान के एक।

खेत में सूरजमुखी के फूल लगे हुए हैं जो कि तीन-चार लोग जो हैं मिलके सूरजमुखी के फूल जो।

एक कंपनी है और एक उसकी जो है शॉप है शॉप है किसी की और।

एक डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक दरख्त है और आसपास से लोग गुजर रहे हैं जिनमें औरतें भी हैं वह और ।

औरतों ने बच्चे भी उठाए हुए हैं एक डेकोरेशन पीस मूर्ति बनी हुई है मूर्तियां बनी ।

और ऑरेंज कलर के पैंट शर्ट पहने हुए पाइप के जरिए से सारे पौधों को पानी दे रहा है।

पौधे लगे हुए हैं कॉलेज के अंदर गार्डन है गार्डन में बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं बिल्डिंग अभी इस टाइम खाली है।

एक ज्वैलरी शॉप है जिसके अंदर जो है सोफे पड़े हुए हैं सोफे जिंक कलर के सोफे हैं और एक।

सात्स्याम स्टोर जो है वो एक बुटीक है यहाँ पे काफी अच्छी जो है शॉप्स बानी हुई है ।

काम वाली बुगियां लगी हुई है बाकी सारा रेलवे स्टेशन खर --

ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है जिस तरह से एक वाइट कलर की ग्रे कलर की गाड़ी पेट्रोल डिलवा रही है वाइट --

सैन पोलिस ये एक सैनमा है जिसके बाहर की तस्वीर है जहां पे कुछ चीजें मोबाइल फोन ।

इसपेनु उनके पीछे भी अ डेकोरेशन की चीज़े मूर्तियाँ पड़ी है और वह कत्थक डांस की प्रैक्टिस कर रही।

एक पहाड़ के पास जो है बिल्डिंग और वहां पे कनोपिया बनी हुई है और छतरी नुमा से छतें बनी हुई।

एक एक रेस्टोरेंट के अंदर की तस्वीर है जिसके जिसमे चेयर्स और टेबल्स लगे हुए है और एक।

और ये किला है जिसके बाहिर एक गार्डन भी है और इमारत के पास एक वो भी एक दरिया भी है।

बड़ी बिल्डिंग है जिसके बाहर का गार्डन है गार्डन के अंदर बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे फूल।

फूल लगे हुए हैं उसके किनारो पे और हरियाली ही हरियाली है गार्डन बहुत प्यार है।